यह चित्र एक गार्डन का है। जहाँ पर ए- एक- एक बढ़िया बहुत ही सुन्दर पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई है अगल बगल।

के अंदर काफी लोग भी होते हैं और और यहाँ रेस्टोरेंट की डेकोरैशन भी बोहोत ही सुन्दर है।

जैसे की इस चित्र मे दिखाया जा रहा है और ये एक मछली मार्किट है।

और यहाँ पे बुक और किताबे और कॉपीया भी मिलती हैं और ये बुक की दुकान काफ़ी बड़ी भी दिख रही --

एक इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक ब्यूटी पार्लर का चित्र है और ये ब्यूटी पार्लर देखने में ही बहुत सुंदर लग रही है।